आदमी भी दिखाई दे रहा है।

छतरी दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे --

घर का कलर वाइट है होटल है कप है।

बोर्ड है पोस्टर है कई सारे कपड़े हैं आदमिये हैं।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

टेंट है पैड पौधे है।

घर दिखाई दे रहा है।

डस्टबिन है पैड-पौदे हैं आसमान है।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

घर का कलर वाइट है।

लड़की है।

ए_सी है लाइट है।

आसमान है आसमान का रंग नीला है।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

लाइटें बढ़ रही है ए_सी दिखाई दे रहा है।

आदमी है पर्दा है।

बाजार दिखाई दे रहा है।